एक शॉप जैसा दिख रहा है वहाँ पे एक दिवार दिख रही है छोटी सी उस पर कुछ बर्नियाँ कुछ समान रखा दिख रहा है वहाँ पर लाइटे दिख रहा है वहाँ स्टील का स्टूल दिख रहा हैं उस पे एक आदमी बैठा दिख रहा है और सामने कुछ कैरट रखे हुए है वो उसमें बहुत सारी मछलीयाँ रखी हुई दिख रही है अलग-अलग कैरट में।

ऑरेंज कलर का एक बिल्डिंग दिख रहा है और वहां पे कुछ मोटर साइकिलया खड़ी दिख रही है।

भी दिख रहा है कुछ लोग वहाँ पे खड़े दिख रहे है और कुछ लोग --

लड़कियाँ दिख रही हैं और कुछ लड़के भी दिख रहे हैं उनके वहाँ पे साइकिल भी दिख रही है मोटर साइकिल खड़ी दिख रही है वहाँ पे इमारतें दिख रही हैं बड़े-बड़े इलेक्ट्रिसिटी के खंभे दिख रहे हैं कुछ शॉप दिख रहे हैं पेड़-पौधे दिख रहे हैं।

बाजू में भी कुछ शॉप दिख रहे है और एक शटर बंद दिख रहा है।

एक जिम दिख रहा है उस वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं नीचे कुछ अ जो कारपेट लगाया हुआ दिख रहा है लाल और नीले कलर का वहाँ पे दो तीन लोग दिख रहे है वो--

वहाँ पे एक ए_टी_एम दिख रहा है पीछे शटर दिख रही है वहां पे लोगों की लाइन लगी हुई दिख रही है जाने के लिए अंदर वहां पे पत्थर का शेड बना हुआ है।

जिसके सामने एक टेबल दिख रहा है वहां पर जो रेक है उसमें बहुत सारी किताबें दिख रही है वहां पे दिख रहे हैं गुब्बारे दिख रहे हैं और एक आदमी उसके बाजू में दिख रहा है।

पेड़ वहाँ पे बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं और बहुत सारे कुछ बच्चे औरतें और लोग उसपे बैठते हुए और पालने में खेलते हुए नजर आ रहे हैं आसमान दिख रहा है दिन का समय दिख रहा है |

वहां पे एक साइकल पे लड़का जाता हुआ नजर आ रहा है रास्ते से स्कूटी जाती हुई नजर आ रही है कुछ रिक्शा हैं दिख रही हैं कुछ लोग दिख रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा-सा पोल दिख रहा हैं आसमान दिख रहा है।